काले और उजले रंग का चेक है जिसपे इसके पीछे बहुत सारे कुछ कलरफुल पेपर टाइप में रखे हुए हैं और इसमें रेलिंग भी जोकी --

एक केची भी है इस में बहुत सारे डब्बा भी है इसमें पंखा लटकाया हुआ है और एक रेलिंग है जिस पे बोहोत सारे सामान लटकाए हुई है इस में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है अ बोहोत एक इस में अ --

और आस-पास कुछ लाइट्स भी जल रहे हैं |

इस तस्वीर में वॉटरपार्क का नजारा दिख रहा है जिसमें बहुत से तरीके के खिलौने --

अंदर दुर्गा-माँ की प्रतिमा अस्थापित की गई है और बहोत ही अ रंग-बिरंगे अं सजावट किये गए हैं बहोत ही रंग-बिरंगे लाइट्स लगाए गए हैं इसमें।

और इसमें बहुत सारे गेट भी है और सीढ़ी भी है और इसे गाजर रंग से रंगा गया है और इसके बॉडर को लाल रंग से रंगा गया है।

जिसे बहोत ही अअ पिले रंग की जेवर से सजाया गया है और कुछ भक्त जन भी बैठे हुए हैं।

कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग आ रहे हैं |

इस तस्वीर में दृश्य दिखाए गया है जो की बहुत ही देखने में अच्छा लगा रहा है आस-पास कुछ पेड़ भी हैं कुछ ताड़ के पेड़ हैं कुछ बिल्डिंग्स है।

एक पोल भी है और जिससे बहुत सारे कनेक्टेड तार भी हैं।

और आस-पास बोहोत सारे लोग है। बोहोत भीड़ है और कुछ लोग नॉव के हम्म इंतज़ार--

जिसमें बहुत सारी लाइट है छोटी-छोटी जो की टेबल लैंप है और इसमें एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। जिस पे बिहार वर्क सेंटर और लाइट हाउस लिखा हुआ है जिसमे बोहोत सारी घड़िया बनी हुई है।

और इसमें कुछ पंखे भी लगे हुए है और कुछ पोस्टर भी लगे हुए है और दीवाल पे कुछ प्रिंट्स भी लगाए हुए है।

लगे हुए हैं एक लाल रंग की फोर व्हीलर है और कुछ --

इस तस्वीर में एक रोड का नज़ारा दिखाई गए है जिसके आस-पास में बोहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ है बोहोत सारे पोस्टर भी लगे हुए है।